पीछे मे दीवार भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है।

मुझे नीचे में एक प्लास्टिक पाईप भी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर में है।

फोटो में मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे इंसाने दिखाई दे रहे हैं मुझे एक रेड कार्पेट डिखाई डे रहा है।

मुझे पिग्गी बैंक भी दिखाई दे रहा है मुझे मटका भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारे किसिम की टाइल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

रूम के अंदर मुझे बहुत सारे किस्म की फिल्टरे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे बहुत सारे चेयर दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग लाल और काला है।

मुझे बड़े बड़े पेड़ में दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे यूज करने वाले सामान सब और खाने वाले सामान सब दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। मुझे बच्चों की खेलने वाली ट्रेन भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बड़े से नाले दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे इंसाने दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

एक जलती हुई ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रहा है।

मुझे एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे एक रस्सी भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग लाल और सफेद में है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे लोग खरे होके दिखाई दे रहे हैं।

मुझे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक लाल कलर का डसबिन भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे है।

पीछे एक बिस्तर भी नजर आ रहा है।